फोटो में इस स्पेस पे बहोत सारी ब्रेंच रखी हुई हैं और बाजू में बहो-दो बोर्ड लगे हुए हैं।

इस फोटो में यह रोड पर बैनर लगा हुआ है भीतर जाने के लिए बहोत बड़े बड़े गेट लगे हुए हैं बाजु में घर बना हुआ है।

इस फोटो में यहाँ एक नीचे धरी बहोत बड़ी डी.पी दिख रही है और बाजू में बहोत बड़ी डी.पी दे --

और बहोत बड़े बड़े खंबे दिख रहे है। उस पे से ऊपर से तार खिंचा हुआ है। और एक उस साइड में बोर्ड लगा हुआ है।